बाहर लाइटिंग लगा हुआ है बहुत सारे आदमी गुफे के अंदर जाते और आते दिखाई दे रहे है।

मे म अ मुझे एक अ स्टेज दिखाई दे रही है उसपे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है और एक चर्च जैसा दिखाई दे रहा है।

बड़े-बड़े बक्से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं जोकि ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए हैं सब मराठी--

पीछे पिंक और एलो पर्दा लगा हुआ है सफेद और रेड कलर के फूल लगे हुए है दो औरतें साड़ी पेहने हुए है और एक आदमी कुर्ता पजामा पेहने हुए है रुमाल डाले चश्मा लगाए दो आदमी --

इश इमेज में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने बहोत सारे आदमी घूमते हुए दिखाई दे रहा है एक मुसलमान दिखाई दे रहा है बुर्खा पहनी एक--

इस इमेज में मुझे एक स्टेशन सा दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत सरे आदमी बेठे हुए है मास्क लगाए है एक औरत बैठी वो भी मास्क लगाए है।

और उसके बाहर एक दो तीन गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी फोटो निकालते हुए दे रहा है।